यहाँ पे छत ढला रहा है। यहाँ पे मिस्त्री भी हैं लेबर भी है।

यहाँ पे आदमी देखिये खड़ा हुए हैं और क्या कर रहे वो दिख नहीं रहा हैं कुछ तो जरूर कर रहे होंगें तीन चेयर लगा हुआ हैं एक टेबुल हैं टेबुल पे कुछ कर रहे हैं।

ये एक छोटा-सा गोदाम है यहाँ पे हरा-भरा घास दिख रहा हैं।

क्या सामान देखे हैं वो तो नहीं बोलेगें कहेगें क्या हैं हमको नहीं --

बड़ा-बड़ा पत्थर भी रका हुआ है।

तीन भगवान हैं कौन-सा भगवान हैं उ मैं नहीं कहूंगा।

यहाँ देखिए यहाँ तीन या चार मंज़िल का मकान है इस मकान ये पोस्टर एक लगा हुआ है कजरा रे।